यहां पर एक बड़ी सी स्टेडियम है इस स्टेडियम में बहुत बड़ा ग्राउंड है।

यहां पर एक बड़ी सी परफ्यूम की दुकान है।